और यहाँ पर बहुत सारे बेंच और डेस्क लगे हुए हैं |

इस होटल का नाम होटल गेटवे कर्नाटका है।

यह एक डांस क्लास का तस्वीर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ लड़के एवं लडकिया डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं।

यहाँ पर हम एक बड़े से तालाब को देख सकते हैं।